चेक करे हुए रखे दिखाई नज़र आ रहे हैं ऊपर एक फैन लगा हुआ नज़र आ रहा है पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सौ रुपए के टके हुए नज़र आ रहे हैं सामने बच्चों के खिलौने दिखाई दे रहे हैं बैट रखे हुए नज़र आ रहे हैं मैजिक मिरर नज़र आ रहे हैं।

बेड नजर आ रहा है ऊपर चद्दर का सेट डला हुआ दिखाई दे रहा है जाली लगी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं एक--

एक कूलर रखा हुआ नजर आ रहा है दुकानों पे पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहें--

आसपास हरी हरी घासे दिखाई दे रही है।

टला हुआ नजर आ रहा है सामने एक बेसिंग लगा हुआ दिख रहा है।

सामने घर दिखाई दे रहा है झाड़ पेड़ नजर आ रहे हैं।

एक बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है जिस पे टाटा मोटर्स लिखा हुआ है चद्दर का शेड का डला हुआ दिख रहा है एक गेट लगा हुआ नजर आ रहा --

एह ऊपर लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज में एक दीवार पर कलर करा हुआ दिखाई दे रहा है जो पीला कलर करा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में बहुत सारे झाड़ पेड़ नजर आ रहे हैं कुछ झाड़ हरे हरे--

दिखाई दे रहे हैं मुझे बंजर जमीन नजर आ रही है आधे जमीन पर हरि हरि घासे दिखाई दे रही है।

इस इमेज में कंप्यूटर क्लास नजर आ रही है जो उसमें हर टेबल पर कंप्यूटर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ स्टूडेंट नजर आ रहे है।

इस इमेज में एक गोडाउन नजर आ रहा है।

उसमें सीढ़ियां भी नज़र आ रही है सीढी पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो व्हाइट जैकेट ओ टोपा लगाया हुआ है।

इस इमेज़ में कपड़ों की दुकान नजर आ रहा है इसमें बहोत सारे कपड़े जमे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में बहोत सारे बॉक्स रखे हुए दिखाई दे रहे--

पेड़ नजर आ रहे हैं खेत जैसा भी कुछ दिख रहा है खंभे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

बंगले के पास गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं झाड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं बंगले में लंबी सी जाली दिखाई दे रही है।

एक बड़ा सा पोस्टर लगा नजर आ रहा है उसके पास में एक पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में घर बना हुआ नजर आ रहा है बहुत बड़ा बना हुआ दिखाई दे रहा है लंबे लंबे पेड़ नजर आ रहे हैं।

कुछ वाइट ड्रेस में औरते खड़ी हुई नजर आ रही है।